ये बाहर का दीवारी का सरकारी अस्पताल में --

सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान के मिलता है ।

कलाकारी का प्रदर्शन नीचे मैट पे --